जिससे हमें एक जहाँ से दूसरे जहाँ जाने में --

हमारी आधार कार्ड बनाए जाते हैं ये जगह एक अच्छी प्लेस --

और यहाँ पर बहुत सारे लोग जाना पसंद करते हैं।

ये विद्यालय झाझा की--

शादी विवाह में हमेशा --

हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाता है।

और यहां पर हमारे दुर्गा पूजा मनाया जाता है। दुर्गा पूजा हमारे--

लिंक फ़ैल हीं रहता है जिसके कारण से काम बहुत स्लो होता है।

और यहाँ की ग्राहक कभी कम नहीं होती क्योंकि यहाँ की फैसिलिटी --

और इसे पकड़ना बहुत ही जरूरी है ।